है पीछे इसमे संतरे भी रखें है नीचे इसकी डलिया का रंग कत्थई है इसमें सामने केले भी रखें हुए है।

यह तस्वीर एक ज़ू की दिख रही है जिसमें जाली लगी हुई है।

यह तस्वीर में एक कार दिख रही है जो सुरमई कलर की है इसमें नीचे फर्श नजर आ रहा है पीछे इसमें हरे रंग के पेड़ दिख रहें हैं साइड में इसके एक और कार नजर आ रही है।